कुछ दूर में घर नजर आ रहे हैं छोटे छोटे।

कुछ घर भी नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में एक फोर लाइन रोड का है।

जो की चार लड़कियां टेबल पे कुछ सामग्री रखे हुए है।

सामने में इंटा रखा हुआ है।

और सामने में फोन पे का बारकोड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक वाटर पार्क का नजर आ रहा है।

पीछे एक आदमी खड़ा है टी शर्ट में।

उसी शेड घर है।

कुछ सात आठ स्टूडेंट है जो की सभी के बुक खुले हुए हैं।

जोकि नीचे का बिल्डिंग व्हाइट और ग्रीन से पेंट किया हुआ है।

आदमी रोड पर आते जाते हुए नजर आ रहे हैं।

एक ऑटो जाता हुआ नजर आ रहा है।

जो कि व्हाइट पिंक और रेड रोज से बना हुआ है।

जो कि पंद्रह जैसे बुके बना हुआ रखा हुआ है ।

पांच सात और दो बिजली के खंभे नजर आ रहे--

और टेबल में टिशू पेपर है।

ब्लू कलर के ट्रे में सब्जियां हैं इधर बाएं--

इस तस्वीर में एक लड़का बैठा हुआ है।

घर के राशन के समान--

कुछ रैक में छोटे छोटे समान है।

उनके एक सर हैं।